और सीढ़िया भी है उस दुकान से नीचे उतरने के लिए ऊपर में घर बना हुआ बालकनी है उसमे और खिड़किया भी है जो काफी ख़ूबसूरत लग रहा है और खुला आसमान है जो उजले रंग का है।

नीचे में बोहुत सारी गड़िया है और बोहुत सारे लोग भी है। यह दिन का नजारा है। यहां पर सूरज की किरणें भी आ रही है ।

यहाँ पर पानी जमा हुआ है जो गंदा है और काफी कम पानी है। और पत्थरों के कुछ फेरे टूटे हुये है। यहाँ पर बोहत सारी सीढ़िया नजर आ रही है जो ये ऊपर जाने की रास्ता है ।

सामने पेड़ है जो हरे रंग के है। और एक कपड़ा है जो पीले रंग का है जो किसी छत के जैसा बना हुआ है ।

ये साइकल की दुकान है जहाँ पर बोहत सारी साइकल रखी हुई है। और ऊपर के खाने में बच्चों के खेलने के लिए साइकल है जो की काफी प्यारी-प्यारी पीले और लाल रंग की है ।

यह साड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत और बनारसी साड़ी के जैसा लग रहा है| इस साड़ी के अ रंग ब्लू है और इसके ऑपशनस भी है जो फिरोजा गुलाबी हरा और नारंगी है।

दोनों में बोहत ही खूबसूरत डिज़ाइनर वाला कपड़े पहनाए हुये है। और नीचे का फर्श काफी साफ-सुथरा है। उपर छत पर भी काफी अच्छा लग रहा है डिज़ा --

यहाँ पर बोहत सारे लोग हैं जो आ जा रहे हैं। और सामने मिट्टी का ढेर भरकर के उस पर सब्जी रखा हुआ है। और यहाँ प्लास्टिक से भी घेरा हुआ है। यहाँ पर मोटर साइकल भी है।

यहाँ लोहे की गेट है जिसका रंग भूरा है और जो लोहे के गेट के उस पार बहुत सारे सामान है जो काम हो रहा है।

पर एक दीवार भी है जो प्लास्टर किया हुआ है पर इसमें पेंट नहीं है| यहाँ पर सूरज की किरणे आ रही जो काफी खूबसूरत है| बगल में पेड़ है जो हरे रंग का है।

यहाँ शादी या फंक्शन के सीन का फोटो है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया है| यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स जो लगे हुए हैं।